ब्रिज दिखाई दे रहा है मुझे इसमें होटलस नज़र आ रहे है मुझे इसमें पा- पहाड़ दिखाई दे रहे हैं मुझे इसमे ट्रीस दिखाई दे रहे है एक नदी दिखाई दे रही है जिसके अंदर पानी है।

फोटो दिन के समय का दिखाई दे रहा हैफोटो मे मुझे एक एरोप्लेन दिखाई दे रहा है जिसमे कुछ काम हो रहा है उसे एरोप्लेन के पास कुछ वरकर दिखाये दे रहे है इसमे ग्रास नजर आ रही--

जिसके अंदर एक एयरोप्लेन खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है जिसका रेड और वाइट कलर है मुझे कुछ लोग नज़र आ रहे है जो प्लेन से उतर रहे है मुझे इसमें कुछ ग्रास नज़र आ रही है और कुछ प्लांट दिख रहे है।

इस फोटो मे मुझे एक एयरपोर्ट नजर आ रहा है जोकि व्हाइट कलर का पुता हुआ है उस वो एयरपोर्ट --

मुझे यहाँ पे पेड़े दिखाई दे रहे हैं और कुछ प्लांट्स नज़र आ रहे हैं मुझे इसमें एक एयरपोर्ट नज़र आ रहा हैं जो वाइट कलर का पुता हुआ हैं और बहोत साफ दिखाई दे रहा हैं।

इस फोटो मे मुजे दिन का समय दिखाई दे रहा है इसमे मुजे एक हीली पेड़ नजर आ रहा है जिसमे पर एक प्लेन खड़ा हुवा है प्लेन का कलर डेर और व्हाइट है ।

तो मुझे बहुत सारे लोग नजर आ रहे है जो कि वर्क कर रहे है अपना मुझे कुछ पेड़ नजर आ रहे है कुछ प्लांट्स नजर आ रहा है और जमीन दिखाई दे रही है जो कि ब्राउन कलर की दिख रही है।

इस फोटो में मुझे दिन का समय दिखाई दे रहा है मुझे इसमें एक खुला आसमान नज़र आ रहा है मुझे इसमें एक एक एयरपेट दि नज़र आ रहा है और इसके अंदर मुझे ऐरोप्लेन खड़े हुए दिखाई दे रहे है जिनका कलर वाइट और ब्लू है।

पानी दिखाई दे रहा है जो कि एकदम साफ दिख रहा है मुझे कुछ फतर दिखाई दे रहा और मुझे कुछ प्लांट्स और ट्री दिखाई दे रहे है जो कि हरे कलर के दिख रहे है ।

मुझे इन माउंटेन्स पर वाइट कलर का स्नो दिखाई दे रहा है मुझे कुछ घर नज़र आ रहे है मुझे ग्रीन कलर के कुछ प्लांट्स नज़र आ रहे है मुझे कुछ क्लाउड्स भी नज़र आ रहे है।

ये फोटो मुझे दिन के समय का दिखाई दे रहा है इसमें मुझे एक सूरज नज़र आ रहा है उस सूरज की रोशनी दिखाई दे रही है सूरज ठीक से नहीं दिख रहा है।

यह फोटो सुबह के वक्त का फोटो दिखाई दे रहा है इस फोटो में बहुत सारे माउंटेन दिखाई दे रहे है जिसमें मुझे बादल दिखाई दे रहे है आसमान दिखाई दे रहा है यह फोटो इस फोटो के अंदर एक जंगल दिखाई दे रहा है ।